पेड़ पौधे दिख रहे है जो की हरे भरे कुछ पेड़ पौधे सुखे दिख रहे है लोहे की जालियां लगी है अगल बगल सीढ़िया टायर रखी हुई है जिनमे टायर --

एक लाल रंग की टोपी पहनी है कुछ छोटे बच्चे नीचे हरी घास है भूरी मिटटी दिख रही है पेड़ पौधे बड़े- बड़े दिख रहे है कुछ पेड़ -पौधे छोटे--

यहाँ पे बहुत सारे बोटल पाम के पेड़ दिख रहे है आसमान रात है कुछ लोग हैं।

यह मंदिर जैसा कुछ है इसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग कुछ बने हुए है बहुत सारे लोग अंदर बाहर आ जा रहे है।

यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे फुग्गे है जो की लाल पीले है कही पे पाँच फुग्गा लगा है कही पे खिलाड़ी खेल कूद के लिए कुछ इनाम रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग है ऊपर की तरफ संतरे रंग की टेंट लगाई गई है कुछ लोग झुके हुए है कुछ लोग खड़े हैं।

यहाँ पे अगल बगल में पिले रंग की फूलो की तैयारी हो रही है हरे हरे पिले रंग की--

यहाँ पे घर बनेगा चुने से निशान लगाया गया है कुछ लोग है जो की संतरे रंग की टीशर्ट पहने है कुछ लोग सफ़ेद रंग की टीशर्ट पहने है।

जमींन भूरे रंग की दिख रही है लोहे का गेट लगा है घर के बड़ा सा--

जिस पे गुलाबी रंग से परदे लगाए गए है सफ़ेद रंग से भी लगाए गयी है लोहे की जालियाँ लगाई गयी है झालर लगाई गयी है जो की नीले पीले रंग--

दिवालो पर गुलाबी रंग पोता हुआ है नीचे फर्श सफ़ेद धुप पड़ रहा हैं लोहे की राड जलीयां लगी हुई हैं चिठ्ठी बोर्ड लगा हुआ चप्पल उतरा है लो--

फर्श काली रंग की दिख रही है कही पे हरे रंग की रखी हुयी हैं।

यहाँ पे जमीन काली काली दिख रही हैं चिकन रखा हुआ है बहुत सारी प्याज रखी हुई है एक बोरी पर लहसुन रखी हुई है जिन्जर रखा हुआ हैं तगड़ी रखा हुआ है।